जैसा कि मैं देख पा रहा हूं कि इस फोटो में मुझको एक--

कुछ रखा नहीं हुआ है खाली रखी हुई है कमरे के अंदर एक दुर्गी माता जी की फोटो भी लगी हुई।

भगवान जी की प्रतिमा नजर आ रही है जो की प्रतिमा देखने में--

जिसके अंदर कांच का बहुत ही सुंदर सेट बना हुआ है जिसके अंदर से एंट्री हम ले सकते हैं।

जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ कि इस फोटो में मुझे एक ऑफिस नजर आ रहा है।

इस ऑफिस में सबकी अलग-अलग डेस्क बनी हुई नज़र आ रही हैं एक कुर्सी भी दिख रही है जो कि काफ़ी अ सही लग रहा है ऑफिस ।